सबसे पहले मुझे इस तस्वीर में घर का अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बेंच के ऊपर काफी ज्यादा फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

सामने एक ब्लैक बोर्ड है जिसका स्टैंड व्हाइट कलर से कलर किया गया है।

आगे एक बड़ा सा पेड़ है जिसके ऊपर भी एक लाइट लगा हुआ है।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

मुझे इस तस्वीर में एक फुटबॉल ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर काफी सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं प्लेयर्स का जर्सी का कलर व्हाइट और रेड है।

सबसे पहले मुझे इस तस्वीर में दो झूला दिखाई दे रहा है जिसको लोहा से बनाया गया है ठीक उसके पीछे एक कच्चा हाउस बना हुआ है जिसको पट्टा से बनाया गया है।

पीछे एक बड़ा सा पेड़ है और आसमान एकदम सफा है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा एक रॉड दिखाई दे रहा जीसके साइड में काफी बड़ा एक सोलर पैनल वाला स्ट्रीट लाइट है।

सबसे पहले मुझे इस तस्वीर में एक लाइब्रेरी हॉल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर चेयर में काफी ज्यादा लोग बैठा हुआ है और एक लड़का फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा है।

ऊपर एक लाइट बल्ब है और दुकान के आगे चार इंसान बैठा हुआ है।

मुझे तस्वीर में एक सुंदर सा नजारा दिखाई दे रहा है जिसमें एक लड़का ब्लू और व्हाइट कलर का एक टी शर्ट पहन कर खड़ा है जिसको पीछे से एक लड़का फिर फोटो खींच रहा है अपने फोन अपने हाथ में फोन लिए।

सामने एक कच्चा हाउस है जो कि बंबू से बना हुआ है।

और ब्रिंजल कलर में उसको कलर किया गया ऊपर में एक बैनर है और साइड में एक व्हाइट कलर का बैनर भी लगा हुआ है।

और काफी बड़ा ट्यूबलाइट लगा हुआ है और एक पंख जो की काफी पीछे है।

बाकी के तीन औरत के चेहरे को ब्लर किया गया है।

ठीक आगे एक घास है जिसके ऊपर काफी ज्यादे पत्ते ग्रीन ग्रीन कलर में है।

पीछे के दरवाजा में एक ब्लैक कपड़ा एक ब्लैक परदा लगाया गया है और साइड में एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है पीछे दो खिड़की है।

झंडे के ठीक पीछे एक लंबा सा टावर भी लगा हुआ है सामने ढेर सारा घास और पेड़ पौधे हैं।